कुछ औरत दिख रही है और कागज की माला दिख रही है।

और बाइके दिख रही है क्रेडा दिख रहा है।

और कुछ डिब्बे रखे हुए हैं छोटे छोटे जिनमें कुछ समान है।

और एक बहुत ही लंबा पुल दिख रहा है।

सामने शीशे का गेट दिख रहा है।

जिस गाय के चार पैर है एक औरत दिख रही है।

यह एक स्कूल है ये स्कूल में मुझे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं।

यह एक बहुत ही सुंदर अच्छी शाप है।

और दीवार पर पेंटिंग उतरी हुई है।

इसमें एक व्यक्ति अपने विचार बता रहा है।

और बीच में एक रास्ता भी दिख रहा है।

जिसमें मुझे सोफे दिखाई दे रहे हैं।

और सामने दीवार पर एक चित्र खुदा है जिस पर स्मार्ट टी_वी का चित्र है।

यह एक हॉस्पिटल है जिसमें मुझे दो व्यक्ति दिख रहे हैं।

यह एक यीशु मसीह का स्थान है।

यह एक जोड़ है जिसे जोड़ में मुझे दो भैंस दिख रही है।

जोकि गत्तों में पैकिंग कर रखी है।

यह एक बहुत ही अच्छा सुंदर पार्क है जिसमें बच्चे घूमने के लिए आते हैं।

हरे कलर की और एक खंबा दिख रहा है।

जीस डेरी के पास मुझे कुछ व्यक्ति दिख रहे है।

यह एक बढ़िया लंबा चौड़ा रास्ता है।

और बाद में एक कमरा दिख रहा है जिसका गेट बंद है।

यह एक योगासन का स्थान है जिसमें बच्चे अपनी अपनी योगासन कर रहे हैं।

और आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

यह एक बहुत ही सुंदर समुद्र है।

कुछ बड़े थमले दिख रहे हैं कुछ छोटे छोटे थमले दिख रहे हैं।

और इसके पीछे जंगला भी दिख रहा है।

और व्यक्ति के हाथ में फोन दिख रहा है।